बहोत बड़ा पीपल का पेड़ है और स्कूल है बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके पीछे पेड़ है और एक तालपत्री हैं और रेड कलर का मास्क और वाइट कलर की ड्रेस --